इसमें बुद्धम जी का स्ट्रक्चर बना हुआ है।

ये शादी का टेंट है जिसमें दो आदमी शादी में आये है एक मोबाइल में बात कर रहा है एक खड़ा है।

कैफ़े के सामने और जिसमें एक दोस्त ने येलो कलर की शर्ट पेहना है। एक ने पिंक पेहना है।

ये एक टापू है जिसमें बहुत लोग अ मतलब की टापू में अ नाव में बैठ के --

ये शॉप खुली हुई है। इसका स्टक्चर अ ग्रीन कलर का पेंट हुआ है। सामने का गेट --

ये प्राचीन मंदिर है जिसमे प्राचीन ज़माने के सब अ बने हुए है मूर्तियाँ।

एक रेलिंग भी बनी हुई है साइड में दीवाल भी बनी हुई है छोटी सी।

ये बैटरी वाली गाड़ी है जिसमें एक ब्लू कलर की गाड़ी है इसमें मयूरी लिखा हुआ है ये न्यू गाड़ी है।

और बोहोत बड़ा पेड़ भी बना हुआ है और दीवालें भी है और भी कोई --

और उसके ऊपर अ पेड़ भी लगा हुआ है। स आजु बाजू में एक लाइन गई है।

ये एक बस स्टैंड में जिसमें स्टैंड पे एक बस खड़ी हुई है।

सेकेंड वाली बालकनी में गार्डन बना हुआ है उसमें एक गमले भी लगे हुए हैं जाल भी बनी हुई है।